यह एक चर्च जैसा पन्डाल बना हुआ है जिसमे बहोत सारे लोग साथ मे खड़े है।

यहाँ एक पंडाल बना हुआ है जो चर्च के जैसा है यहाँ कुछ लोग भी आए हुए है कुछ लोग खड़े है कुछ लोग कैंडल जला रहे है।

यह एक मार्केट जैसा है जहां पर कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हैं जो लोग बैठे हैंवो लोग मछली ले बेचने के लिए मछली लेके बैठे हैं।